एक गिफ्ट की दुकान है जिसमे गिफ्ट रॅप होते है और उसके उपर गिफ़्टों की दुकान है जो इसमे गिफ्ट मिलते है बाहर झाड़ू है।

एक सफ़ेद कलर का एक दंडा है। उसमे कुछ लंबीसी रस्सी है। उसमे भारी सा वेट कुछ उठाया हुआ है। एक बड़ा सफ़ेद कलर का दंडा है।

गोल राउंड बना हुआ रेम्बो कलर का सर्कल है बीच मे एक येल्लो कलरका एक मोठासा नीचे एक लंबा शल्ला आ रहा है व्हाइट और रेड कलर की बहुत सारी खुर्चिया है।

गेट है जिसमे गोल्डेन कलर का पेंट करा हुआ है दो गुलदस्ते है व्हाइट कलर के बहुत सारी लाइटिंग लगी है ब्लू कलर की।

नीचे का फर्श रेड कलर का और पर्पल कलर का है रात का समय है गोल्डेन कलर के डिजाइन बने हुए है।

लोहे का टीन का जिसमे बैठ सकते है तीन चार खुर्सिया है थोडसं स सडक थोडी सुखी सुखी सी है गार्डन टाइप मे है।